तलाव में काफी सारा पानी भरा हुआ है।

और दो बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं।

तलाव के किनारे पर कुछ लोग मछलियाँ पकड़ रहे हैं।

मंदिर में एक लड़का और एक बच्ची खड़े हुए हैं।

पीली और लाल कलर की दिखाई दे रही हैं।

जो कि लोहे के एंग्लों से बना हुआ है।